गोल्डन रंग का पेंट हो रहा है और मोटे-मोटे स्टोना की तरह इसमें जो इनका पलड़ा है उस पर देखा रहा है कंधे पे जो डाल रहे हैं ये --

और कई डार्किश में आप देख सको हो अपने किताब मिल सके है किताब को पीस में--